यहां पे चम्मच रखी हुई है चटनी दिखाई दे रही है एक काली कलर की प्लेट दिखाई दे रही है और यहां पे काफी सारे डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहे हैं।

बाहर काफी बैठक बनी हुई है लोगों के बैठने के लिए और काफी उजाला भी है।

यहां पे एक घर बना हुआ है और छोटे छोटे गमलों में लगे हुए दिखाई दे रहे है।

दो ए_सी दिखाई दे रही है और एक टी_वी दिखाई दे रही है जो चल रही है।

और पार्टी के बाहर दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

बीच मे पानी के अंदर काफी सारे लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे है ऊपर कुछ लोग बैठे हुए दिखे दे रहे है कपड़ो के साथ।

और पीछे कुछ गेट सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये किसी का घर लग रहा है।

जगह है और एक गेट बहोत बड़ी गेट दिखाई दे रही है।

ये एक किसी का घर दिखाई दे रहा है जहां काफी सारे सोफे और बेड रखी हुई हैं और यहां काफी उजाला भी है।

ये एक योगा क्लास दिखाई दे रहा हैं जहाँ नीचे लोग कारपेट बिछा के योगा करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

एयर इंडिया का प्लेन है और यहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और आस पास कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहां काफी सारी लाइट लगी हुई है यहां पे फूलों से सजावट करी हुई है और कुछ चेयर रखी हुई है।

और उसपे काफी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कैफे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की फोटो खिंचवा रहा है।